ऊपर में ट्यूबलाइट जले हुए हैं।

एक बड़ा सा आईना भी दिख रहा है।

इस फोटो में मुझे एक बिल्डिंग दिख रहा है।

बिल्डिंग के ऊपर मुझे एक बैनर दिख रहा है।

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लिख हुआ है।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा मंदिर दिखाई दे रहा है।

मुझे बहुत सारे इंसानों भी दिख रहे हैं।

ऊपर में मुझे आसमान भी दिख रहा है।

फोटो में मुझे एक कमरा दिख रहा है।

कमरे के चारों ओर ट्यूबलाइट्स लगाए गए हैं।

फोटो में मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं बहोत सारी खिड़किए और दरवाजे भी दिखाई दे रहे हैं।

बिल्डिंग के अंदर बहोत सारी ट्यूबलाइट जले हुए भी दिखाई दे रहे हैं एक बड़ा सा बैनर भी दिखाई दे रहा है।

मुझे कल रंग का सोफा भी दिख रहा है।

मुझे ऊपर में एल_ई_डी लाइट्स भी दिख रहे हैं।

मुझे दो गैलन भी दिखाई दे रहा है गैलन के संदर्भ में मुझे एक कैलेंडर भी दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक फील्ड दिखाई दे रहा है।

मुझे एक स्ट्रीट लाइट भी दिख रहा है।

मुझे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स भी दिखाई दे रहे हैं जैसे की टी वी ।

मुझे एक इंसान भी दिख रहे हैं।

कमरे के चारों ओर टेबल्स और चेयर रखे गए हैं।